दीवार में सफेद कलर का पेंट हुआ हैं जो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में--

यहाँ पे एक बहुत ही पुराना--

जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

इसमें बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं तथा मेजें भी रखी हुई हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं देखने के लिए--

और इसके अलावा इसमें सफेद कलर का कांच भी लगा हुआ है और एक लेडी भी खड़ी--

एक स्कूटी खड़ी हुई हैं और उसके साथ में और यहाँ पर एक आइसक्यूब भी लिखा हुआ हैं जो कि नीले कलर से लिखा हुआ हैं।

या एक पेड़ लगे हुए हैं।

इसके अलावा यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं।

और अलमारी भी लगी हुई हैं जो कि बहुत सुंदर लग रही है देखने में--

तथा नीले कलर की लाइट लगी हुई हैं।

शादी हो रही है और इसके अलावा यहां पे बहोत सारी--

जिसमें बहुत सारी कारें खड़ी हुई हैं।

जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में।

जो कि एक दुकान है और इसमें--

लगा हुआ है बोर्ड जोकि नीले कलर का है।

इस इमेज़ में एक बहोत सुन्दर जगह नजर आ रही है।

और पीछे से नदी भी आ रही है।

और इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए है अलग अलग तरीके के--

जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है।